इसमें एक आदमी कार सही कर रहा है।

इसमें काफी जो ना ओंख हुआ है।

टेम लड़का यहाँ तस्वीर करवा रहा है इसने ब्लैक --

ये औरतें पूजा कर रही हैं।

लोग चेयर्स पर बैठे हैं।

इनमें नाशपती आलू बुखारा एप्पल --

इन सोलर सिस्टम का कलर ब्लू है।

ये नर्सरी की तस्वीर है इस--

इसमे छोटी बड़ी सारी साइकिल्स है।

कुछ लोग बाइबल सुन रहे हैं।